पेहनी हुई है। पहाड़ी पर छोटे छोटे पेड़ लगे हुए है। जिनका हरा कलर है।

पौदे लगे हुए है और बाकी की जगा खाली पड़ी हुई है उपर बादल दिख रहा है इसमे --

यह एक बड़ा सा मंदिर दिख रहा है।

बहुत प्यारा डेकोरेशन है डेकोरेशन मे फूल लगे हुए है व्हाइट व्हाइट अँड येल्लो कलर मे डेकोरेशन है।

टाटू टी-शर्ट टी-शर्ट लोवर बडी शॉप का कलर व्हाइट है।

बैनर लगे हुए है रो आगे रोट है रोट पे बहुत सारे लोग खड़े हुए है कुछ बाइके भी खडी हुए है कुछ लोग चल रहे है।

इसमे वो क्लास रूम है क्लास रूम मे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए है क्लास रूम का कलर व्हाइट अँड रेड कलर है।

यह एक टेलर की शॉप है जिस में मशीन रखी हुई है बहुत सारे--